सेल्फ में कई सारी बॉटल्स और शीशियाँ रखी हुई नजर आ रही है ।

एक बड़ा मंदिर नजर आ रहा है।

एक इलेक्ट्रिक ऑटो नजर आ रहा है जिस पर एक्सट्रीम मोटर्स लिखा हुआ है।

रोड पर स्कूटी पर कुछ आदमी नजर आ रहें हैं।

दो बड़ी पोल नजर आ रही है।

एक उद्यान नजर आ रहा है।

एक पक्षी नजर आ रहा है। पीछे आसमान दिख रहा है।

एक टिन का शेड बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमे गाय दिखाई दे रही है ।

ड्राईवर की सीट दिखाई दे रही है।

पीछे आसमान नजर आ रहा है।

मजदुर छत की ढ़लाई का काम कर रहें हैं। लोहे की छड़ें नजर आ रही है।

पीछे किले की दिवार नज़र आ रही है।

पीछे आसमान भी दिखाई दे रहा है।